दो तरह के हमे सूट दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान में टायर वगैरह लाइटिंग मिलती होंगी।

दिखने में ऐसा लग रहा है कोई फंक्शन है।

इस पिक्चर हमें बहुत सारी मुर्गियां दिखाई दे हुई हैं।